लड़कियां बैठी हुई लड़कियां खड़ी हुई हैं उन्होंने सफेद रंग कि ड्रेस पहन रखी है लाल टोपी लगा रखी है वह नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं पीछे देख देखने पर ह बसें दिखाई दे रही हैं जो कि पीले रंग कि हैं।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

गोल है चमक रही है इसके सींग भी दिखाई दे रहे है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ की टहनियाँ दिखाई देरी है पत्तियां दिखाई दे रही है पत्तियां पर हरी हरी --

रंग की है पीछे की तरफ कुछ स्टोल लगे हुए है ठेले खड़े हुए है एक गाय दिखाई दे रही है कुछ लोग है जोकि इधर के उअधर जा रहे है और भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

यहाँ पे एक पक्षी खड़ा हुआ है ये मोर है जिसके हरे रंग के विंग्स है गर्दन है जो कि नीले रंग कि है इसके पंख दिखाई दे रहे है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है जिसकी टहनिया दिखाई दे रही है जिसपे हरे पत्ते लगे हुए है।

यहाँ पे एक डेस्क रखी है जो पीले रंग की है इस्पे कुछ शटर रखे है इस्पे हेंडल लगे है ऊपर की तरफ कुछ मशीने रखी है मशीने सफ़ेद रंग की है कार्टून रखे है कार्टून बंधे हुए है।

यहाँ पर स्टील की रेल्लिंग का जाल बिछा हुआ है सरिया खडी हुई है उसे देखने पर --

यह पीछे कुछ पिलर्स भी लगे हुए है जो कि स्टील के रेलिंग से जुड़े हुए है।

कपडे टंगे हुए है पिले नीले रंग कि शर्ट रखी हुई है नीचे एक रेक रखी है रेक में कुछ सामान रखा हुआ है कुछ --

कपडे बोहोत ज्यादा मात्रा में लटके हुए है पीछे की दीवाल दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है बहार की तरफ मोटरसायकल स्कूटर खड़े है जो कि सड़क पर खड़े हुए है पीछे मिट्टी का फर्श दिखाई दे रहा है ऊपर देखने पे कांच से कबर्ड है ये बा --

और एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें रैक लगी है रैक में कॉपी काफी सारे कपड़े हैं रखे हुए हैं पीछे दीवाल दिखाई दे रही है जो कि नीले रंग की है बैग दिखाई दे रही है।